एक ग्रोसरी शॉप है जहाँ पर बहोत सारी चीज़े रखी हुई हैं एक पानी की बोटल रखी हुई है और कुरकुरे चिप्स टंगे हुए हैं।

माइक्रो रखा हुआ है स्पीकर रखे हैं बड़े-बड़े सारे वही एक पुरा ब्रांडेड शोरूम है जहाँ पर टेबल कुर्सियां रखी बेठने की।

छोटा सा मंदिर है जिसके साइड मे बहोत सारे पहाड़ दिख रहे हैं कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं कुछ सीढ़ियां दिख रही हैं मंदिर मे अंदर जाने के लिए।